नीचे जाली लगी हुई देखी जा सकती है।

और कई सारे कूए बने हुए हैं पानी वाले।

मुख्य इमारत सफेद रंग और लाल रंग की बनी हुई है।